दुकान भी लगा हुआ है छोटा सा घर --

देख सकते हैं उस पर चुहक अभियान का लगा हुआ बोर्ड है महिलाओ --

देख सकते है दोनो तरफ इसमें खेत दिखाई दे रहा है। उसके उस साइड पीछे देखिये पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बड़े-बड़े पेड़ है। दो नीम के दिखाई दे रहे है।

इससे लगे हैं खाली है मगर अब ये हॉल यहाँ भी कोई नहीं है ।

चारों तरफ से पार्किंग है यहाँ छोटे-छोटे घास छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए हैं बहुत पत्थर के दिवार हैं ईटें से बने हुए ।

लोग आ जा रहे हैं यहाँ से बहुत सामान लेकर लोग आते-जाते हैं टेबल कर --

रास्ता भी है इधर से --